एक व्यक्ति अपने सर पर एक टोकरी उठाए हुए खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

पूजा करता हुआ नजर आ रहा है।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

ये फोटो एक मंदिर के ऊपर से ली गयी है जिसमें एक दोनों साइड --

और यह फुहारा एक नीचे एक पिलर पर टंगा हुआ है और नीचे इसके तीन चार लाइटें भी जल रइ।

और एक भवन भी उस साइड में बना हुआ नजर आ रहा है और भवन के आगे भी बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह फोटो किसी ऊपर से ली गई है जिसमें से पास में से एक नहर भी निकलती हुई नजर आ रही है।

इसमें बाहर मोटरसायकले सायकले भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं और इसमें पुलिस कि बैरिकेट भी लगे हुए नजर आ रहे --

और यह एक बिल्डिंग के ऊपर से एक बड़ी--

एक ये अलग अलग प्रकार की बनी हुई मूर्तियों में घड़ेनुमा मूर्ति बनी हुई नजर आ रही --

यह फोटो एक होटल व अन्य कोई दुकान की नजर आ रही है जिसमें --